हमें यहां एक स्कूल का विचित्र दिखाई दे रहा है।

यहां पे प्लास्टिक की कुर्सीयां दिखाई दे रही है।

और यहां सामने में एक अंकल और एक आंटी है।

जिसमे बहोत सारे चॉकलेट डाली गई है बिस्किट डाली गई है।

यहां एक मस्जिद का दृश्य दिखाई दे रहा है।

हमें यहां एक जगह का भी चित्र दिखाई दे रहा है।

इसमें अच्छे से सीमेंट रखा जाए और गिरे नहीं ।

हमें यहां एक जगह के पीछे दिखाई दे रहा है।

यहां पर टाइल्स बिछी हुई है।

जहां एक पुल बना हुआ है और पुल के ऊपर लेयरिंगे बनी हुई है ।